एक व्यक्ति उसे वॉश कर रहा है।

एक घर बना हुआ दिखाई दे रहा है।

जहाँ पर जय श्री राम लिखा हुआ है और जय महाकाल लिखा है।

कुछ गाड़िया पार्क हैं रोड पर।

इसमें काफी सारी रस्सियां बंधी हुई है।

एक व्यक्ति फ़ोन पे बात कर रहा है जिसने नीले कलर का शर्ट पेहना हुआ है।

और ऊपर चद्दर का पूरा टीम बना हुआ दिख रहा है जहां निचे भी कार पार्क की गई है।

सामने की ओर कुछ दुकाने दिखाई दे रही है।